इस तस्वीर में देखा जा सकता है की एक परचून जनरल स्टोर की दुकान है। यहाँ पर सारे बोरे रखे गए हैं गेहू चावल के हैं ओर इसमें आलू-वालु सब है। यहाँ पर --

इस तस्वीर में देख सकते है आप लोग कि ये मार्केट की तस्वीर ली गई है जो जहाँ पर सब्जियाँ बिक रही है और लोग आ जा रहे हैं एक कार--

इस तस्वीर में देखा जा सकता है की ये एक मंदिर की तस्वीर ली गई है यहाँ पर एक गाय माता है जिनकी मूर्ती बनी हुई है जो हिंदू लोग है गाय माता को पूजा करते है।

तस्वीर में देखा जा सकता है की ऑरेंज कलर का पुरा एक मध्य विधालय है।

इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ये मंदिर कि तस्वीर है ये बड़ा सा गुम्बज बना हुआ है और ये पुरे गेट बने हुए है।

तस्वीर में देखा जा सकता है कि यह बस स्टेशन की तस्वीर है और यहां पर ढेर सारे बस खड़े है।